यह एक हिन्दू मंदिर है जहाँ पर सभी --

तथा से समस्त सभी कार्यों को करते हैं।

युवा वर्ग तथा बच्चे अपना जन्म दिन मानाने हेतु जाते हैं।

आ जिससे की समस्त नदियों का पानी रोका जाता है।

अ अनेक नीतियाँ भी लागू की गई थी। इससे सिंचाई करने में भी आसानी होती है।

परीक्षा देना हर एक विद्यार्थियों के लिए अत्यअधिक कठिन होता है परन्तु वह उसमें बैठकर उसे सफलता प्राप्त करने के लिए अपना जी-जान लगा लेते हैं।

विद्यालय एक ऐसा स्थान हैजहाँ पर समस्त विद्यार्थीय गण उपस्थित होकर शिक्षक से अपने समस्त कार्यों को करते हैं तथा विद्यालय में ही बैठने का मानसिक विकास होता है|

जहाँ पर समस्त अ कंप्यूटर सम्बन्धित कार्यों को किया जाता है तथा यहाँ पर अनेक प्रकार की अ सहायता एवं गतिविधयां भी होती है जिससे कि ऑनलाइन कार्यों को किया जा सके।

महजिद ठीक प्रमुख स्थान है जिससे --